में भी दिख रहे हैं ऊपर की और छत डली हुई है।

जहाँ सामने की और बहुत सारी टी.वी. रखी हुई हैं नीचे की और टी.वी. रखी हुई हैं।

सामान रखा हुआ है जहाँ पर कई सारे वस्त्र पंखा आदि चीजें हैं।

यह सामने की ओर एक शादी हॉल दिख रहा हैशादी हॉल के अंदर दो व्यक्ति बाहर की ओर निकल रहै है।

रेस्टोरेंट के अंदर कई सारी टेबल कुर्सियाँ भी दिखाई दे रही हैं ऊपर की और पंखे भी दिखाई दे रहें हैं।

ऊपर की और हरे पेदे पौधे भी दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ सामने की ओर एक बड़ा सा मकान दिखाई दे रहा है।

दुकान के अन्दर कई सारा सामान रखा हुआ है।